पीला और शा काफी रंग है और ये रात का मौसम है। काफी भयानक मौसम है। यहाँ सभी लोग आते हैं बैठने के लिए कुर्सी भी हैं यहाँ पर --

हाय फ्रेंड्स ये दीपावली का मौसम लग रहा है यहां पर रेड मोमबत्ती भी पिघल रही हैये देखिए कितना अच्छा लग रहा है।